इस इमेज में बहोत सारी सब्जियां हैं।

और एक चेयर भी है। चेयर पर कपड़े भी हैं।

और एक बहोत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

उसमें पेड़ लगे हुए हैं।

इस इमेज में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

वो छोटे पेड़ पत्ते भी है ग्रास भी है और एक मूर्ति बनी हुई है।

पीछे दीवार है। दीवार के ऊपर घेरा बंदी करने खातिर तार लगा रखी।

आर्टिफिशियल फूल लग रही है।

पोस्टर लगे हुए हैं आदमी बहुत सारे हैं बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर पड़े हुए हैं।

एक फैक्ट्री है फैक्ट्री के भीतर बहोत सारे मजदूर काम कर रहे--

नहर के किनारे एक घर बना हुआ है।

और इस नेहर के दूसरे किनारे पर एक झोपड़ी बनी हुई हैं।

और एक आदमी ने मार्क्स पैर रखा है उसके हाथ में कुछ औजार से भी है।

इस इमेज में दुकान है। उसमें बोहोत सारे सामान मिलते हैं। कुत्तों के बोहोत सारे सामान मिलते हैं खाने पीने के।

कुर्ते भी हैं यहां पर और बहुत सारी लाइटिंग हो रही है।